जिसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

दो पुलिस वाले दिख रहें हैं बिल्डिंग का कलर हमें--

यहां पर हमें दिख रहा है।

ब्राउन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

साथ में ही कपड़ा पड़ा हुआ है।

ग्रीन कुछ पत्थर रेड कलर के--

ट्रेडिंग साथ में येलो कलर हमे अंदर की ओर दिखाई दे रहा--

एक पेड़ सामने लगा हुआ है।

यहां पर हमें दिखाई दे रही है।

रेड शर्ट में एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा--

जिसमें कि लाइट जल रही है।

यहां पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

साथ में ही येलो कलर की बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।